नीचे बहोत ही सुंदर सुंदर घासे है हरे भरे--

इस चित्र में एक नदी है जिसमें बहुत ही ज्यादा पानी है और एक यह एक यह ये आदमी एक बहुत ही लंबा पुल पे खड़ा है।

इसमें बहुत सारे साइकिल लाइन से लगाए गए हैं और तीन चार स्टूडेंट साइकिल पर बैठे हुए हैं।

एक बूढ़ा व्यक्ति प्लास्टिक को लेकर कुछ जा रहा है रोड पे पानी भी है।

यह एक बहुत ही बड़ा बेसिन का दुकान है जिसमें बहुत सारे और हैंडवाश बेसिन रखे गए हैं कुछ बाथरूम वाला टाइल्स भी रखा गया है।

तीन चार औरतों गेट के सामने बैठी हैं और तीन चार व्यक्ति खड़े भी हैं।

इस चित्र में दो बाइक लगे हुए हैं जो कि एक टी_वी_एस है और एक पल्सर बाइक है इसमें दो ब्ल्यू कलर का चेयर भी है।

बहुत ही लंबा पुल बनाया हुआ है और एक बहुत ही लंबा टावर भी है।

इसके ऊपर से तार भी गया हुआ है एक नदी का चित्र जिसमें बहुत सारे पानी है इसके अगल बगल बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी है।

तीनो व्यक्ति का चटाई एक का नीला कलर है एक का गुलाबी कलर है एक का पीला कलर है।